और पी पीले कलर का भी दिखाई दे रहा है।

और दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में बस अड्डा दिखाई दे रहा है।

और बड़े बड़े तार भी बिछे हुए हैं ऊपर की ओर और एक बाजा लगा है।

और बहुत सारी लाल कलर की कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

जिस जिसमें सामने की और एक दिल भी दिखाई दे रहा है।

और एक बड़ा सा शीशे का कोंटर भी दिखाई दे रहा है।

और साइड में एक लाइट लगी हुई है और बगल में और एक कार भी खड़ी हुई है।

इस फोटो में एक बेकड़ी की दुकान है बड़ी सी।

सामने की ओर ब्लैक कलर का डी_जे भी दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है वाइट कलर का।

और इस बहुत सारे लोग कुर्सी लिए बैठे हुए हैं।

इस फोटो में छोटे छोटे गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें सामने की तरफ दो ए_सी भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

और एक परछाई भी जीने की दिखाई दे रही है और सामने की तरफ जिंगला है।

और ब बड़ा सा पानी भी दिखाई दे रहा है तालाब का।

जमीन में ग्रे कलर की घास भी निकली हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है।

और छोटे छोटे गमले भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारे गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा थिएटर दिखाई दे रहा है।

इसमें एक बड़ी सी टी_भी भी लगी हुई दिखाई दे रहा है।

जिसका कलर व्हाइट और येलो कलर का दिखाई दे रहा है।